इसमें रेड कलर का कारपेट लगा हुआ है और इसमें बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

बॉक्स टाइप के कुछ उसमें हैं जो की लाल और व्हाइट कलर का हैं यहां बहोत सारे पेड़ हैं।

एक लड़की ने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है।

ऑफिस का नाम बॉक्स ऑफिस हैं ऑफिस ब्लैक कलर का हैं।

प्लेग्राउंड में एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है।

और एक बाइक यहां बहोत सारी मिट्टी है--

और मैदान के दूसरी तरफ एक--

ब्लैक कलर की खिड़की और दरवाजे--

गार्डन का टॉप पे येलो ब्लू एंड रेड कलर का कुछ बना हैं।

है और पौधे भी यहां एक गेट भी है यहां सीढ़ियां भी है।

इस पर सड़क के बाहर एक आदमी बाइक पर जा रहा हैं।

और यहां रेड कलर के कर्टेनस है।

टेनिस टेबल कर कलर ब्लू है।

और यहां बहोत सारे पेड़ पौधे भी है यहां एक ट्रेनिंग कोच भी है।

एक हरे रंग का पेड़ है।